यहां पे बहोत सारे मसाले के पाकि--

और बाजू में यहां सोलार के खंबे लगाए गए हैं।

यहां सामने एक घर दिख रहा है और टी शर्ट लिया गया है।

सामने यहां पे टयरा रखे हुए हैं और बहोत सारे पार्ट्स में प्लांट लगाए गए बड़े बड़े झाड़ा है।

एक आदमी और एक औरत ठहरी हुई है।

यहां टेबल के ऊपर एक प्लेट में--

बड़ीसी नदी दिख रही है।

कार्टून पड़े हुए हैं थैले पड़े हुए हैं।

और फियाना एल_ई_डी लाइट्स बाहर घरा हैं।

बाजू यहां दीवारें उठाई गई है।

और यहां पे अंदर थोड़े लोग भी हैं बड़े-बड़े यहां पे झाड़ा दिख रहे हैं।

आजू बाजू बड़े बड़े झाड़ा हैं।

ये एक यहां पे बड़ा सा--

सामने भी एक घर है सामने यहां पे--

डांस कर रही है बाजू में यहां पीछे परदे मारे गए हैं।

लंबी लाइन लगा के यहां पे--

नीचे यहां पे दुकानें लगी हुई हैं।

ये एक यहां पे बड़ा सा--

ये एक यहां पे बड़ा सा मैदान है।